यहां काफी सारा कचरा भी है।

यहां एक बोर्ड भी लगा है।

इन क्रेट का कलर दो रेड है।

कुछ रूम पर ताले लगे हैं।

यहां काफी सारे कॉफी मग पड़े हैं।

घर के बाहर कुछ घास उगी हुई है।

ऊपर बहोत सारे बिस्किट और रस्क पड़े हैं।

इसके ऊपर एक घोड़ा खड़ा हैं।

सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ हैं।

एक व्यक्ति जे_सी_बी के अंदर बैठा हुआ है।

यहाँ कुछ उर्दू में भी लिखा है।

येह कूलर सारे नए नए हैं।

सामने एक व्यक्ति सब्जी ले रहा है।